यह एक लड़का है जो की सब्जी बेच रहा है इसके पास धनिया मिर्च नींबू अदरक है इसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है इसके पास तराजू भी है।

यहाँ पे हमें दही भी दिखाई दे रही है। टमाटर शिमला पालक दही भाजी बड़ा आदि।

ऊपर आसमान है नीला कुछ बच्चे हैं जो कि ऊपर से कूद रहे हैं कुछ बच्चे जो पुल में नहा रहे हैं।

यह एक नाई का दुकान दिखाया गया है इसमें एक आदमी बैठा हुआ है जो की अपनी मूछ बनवा रहा है इसके ऊपर सीलिंग है नीचे टाइल्स है।

इसके आस पास हमें आ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है झाड़ियां दिखाई दे रही है छोटे से पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है पेवर ब्लॉक रस्ता है।

और ए इनके आसपास भी पेड़ - पौधे बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं।

ये इस्मारक कह सखते है इसके आस-पास हमे छोटे-छोटे से घांस-फूंस दिखाई दे रहे है एक छोटा सा गार्डन दिखाई दे रहा है सामने का एक ब्लाक बनाया हुआ है जिसमे बैठ कर हम नज़ारा देख --

यह एक चिड़िया घर का दृश्य है इसके अंदर एक शेर है जिसको कैद करके रखा गया है इसके सामने एक जाली लगाई गई हैं।

जिसका कलर हमारा येलो है इसके आसपास भी हमें कई सारी शिप दिखाई दे रही है नांव दिखाई दे रही है जिनके ऊपर झंडा भी लगा हुआ है एक औरत भी सामने खड़ी हुई है।

यह एक उद्यान या एक ऐसी जगह दिखाई दे रही है इसमें हमें ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है सीढ़ी दिखाई हैं ।

यह एक दृश्य जो की मंदिर का दृश्य समझ में आ रहा है इसके पास में एक पवन चक्की भी दिखाई दे रही है कुछ--